और यहां पर हमें धूप भी दिखाई दे रही है।

सभी लिखने वगैरे कि वस अ सामाने दिखाई दे रही है।